हमें एक स्टेज दिखाई दे रही है जहां में बहुत सारा लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहन के डांस कर रही है।

और बीच में बहुत सारा बैलून सैफरॉन व्हाइट क्रीम से सजा के रखा है।

इसमें जहां में पर्दा डो डोर मेट ये सब मिलते हैं।

और बहुत सारा प्लांट्स भी है और यही लिखा है कि वेलकम टू महिंद्रा फैमिली शायद ये एक गाड़ी का डीलर है और बहुत सारा गाड़ी भी--

बहुत सारा लाइट है किताब है उसका पेन है दो चेयर है बैठने के लिए टेबल है।

बहुत ही बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहे है जो चार मंजिल के है।

और एक सामने में ड्रायर है ड्रायर के ऊपर में एक ट्रे में पानी रखा है और साथ ही साथ एक डब्ल्यू_एल_एल फोन भी है।

ये शायद ये बिल्डिंग अभी भी बन ही रहे तो इसीलिए बहुत सारा बैंबू रखा है इसमें।

और यहां में बहुत सारा खेलने का समान लोग है और उस तरफ में मौसम भी बहुत अच्छा है।

और बेड के सामने में एक ड्रावर भी दिखाई दे रहे हैं।

और तीन दिखाई दे रहे हैं पीछे में भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ।

और बहुत सारा लाइट्स भी चुना के रखा है और ब्रिज भी बंबू का हैं और दोनों घर भी बंबू से ही बनाया है।

अ गाय का गाय को अ एक दो रस्सी से बान्हा है एक अ लाल रंग का रस्सी और दूसरा एक सफेद रंग का रस्सी और पीछे में और एक गाय है लगते शायद से--